इस पिक्चर में क्लासरूम देखा जा सकता है जहाँ बेंच और डेस्क लगे हुए हैं जहाँ स्टूडेंट अपने स्टडी के लिए यहाँ पर आते हैं।

इस पिक्चर मे हम डी आर सुपर मार्केट की एक बड़ी सी शॉप देख सकते है जहां पर घरेलू चीजों की हर एक आवश्यकताओं की चीजे इस शॉप मे हमे मिल जाती है।

इस पिक्चर में हमें रॉयल एनफील्ड की एक शोरूम दिखाई दे रही है। और उसके बगल में एक मंदिर भी है। और बाहर पार्किंग में कुछ गाड़ियां बाइक वाइक खड़ी हुई हैं।

पार्टी बर्थडे पार्टी या शादी पार्टी यहाँ पर हम अपने दोस्तों परिवारों के साथ बैठकर खाना खा सकते हैं।

यह एक बेकरी शॉप की दुकान है जहाँ केक हो गए और बेकरी के जितने भी आइटम है वो यहाँ मिलते है।

इस पिक्चर में हम एक चर्च को देख सकते है जो बहुत ही सुंदर लग रहा है और यहाँ की जगह भी बहुत ही सुंदर लग रही है और इस रास्ते पे कलरफुल --